कुछ पालतू जानवर दिखाई दे रहे हैं जो कि --

एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे साफ सफाई --